यहाँ पर हम बहुत सारी मुर्गियाँ देख पा रहे है हमे यहाँ मुर्गे भी नजर आ रहे है ऐसा लग रहा है जैसे की यह एक फार्म है।

आस-पास हम यहाँ पर कुछ लड़को को बैठा हुआ देख पा रहे हैं हमे यहाँ पर बड़े-बड़े पत्थर देखने को मिल रहे हैं जो कि देखने में हमे काफी पुराना नजर आ रहा है।

यहाँ पर लाइटें भी लगाई गई है देखने में ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा और खूबसूरत नज़र--